कालसिया क्राउच लिखा हुआ है और भी कुछ-कुछ लिखा हुआ है। नीचे बड़ा सा लोहे का गेट लगा है।

और वाइट कलर से पूरा पेंट किया हैऔर साइड - साइड में चेयर टेबल रखा हुआ है।

यहाँ पर एक लड़का दिख रहा है जो वाइट कलर का टोपी लगाया है उसके पीछे भी एक लड़का है जिसने ब्लू कलर का टोपी लगाया है ।

अ उसकी दीवालों में टाइल्स लगा हुआ है।

साहू जैन महिला महाविद्यालय लिखा हुआ है इण्टरमीडिएट कला लिखा हुआ है ।